दिखाई दे रहे है जो इसका रंग हमे कला दिख रहा है और सड़क के बिच में हमें एक सफ़ेद कलर की लाइन दिखाई दे रही है और महे एक --

हे जिसमे बहत सारे लाइटे लगी हुए दिख रहि है और यह पे बहत सारे सफेद कलर के चेयर रखे हुई दिख रहि है और यहा पर बहत सारा फूल--

दिख रहे है और यहा पर एक जालीबाला गेट दिखाई दे रहा है जिसका कलर हमे नीला दिखाई दे रहा है और यहा पर खाली जमीन दिखाई दे रही है और यहा पर एक सफेद घर दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

और के देख रही है और ईहा पर एक पेड़ दिखाई दे राहा है और ईहा पे एक दीवाल नजर आ रही है। जो की सफेद कालार की दिख रही है। जो की बोहोत अच्छी लग र --

और यहां पर एक नीचे बहुत सारी दुकान दिखाई दे रही है और दुकान में खड़ा एक आदमी नजर आ रहा है और यहां एक सड़क दिखाई दे रहा है जो कि खाली है।

और हमें यह पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। और यहा पर हमें एक गाड़ी खरी हुई दिखाई दे रही है। और यहा पे बोहोत सारि गरिए खरी हुई दिख रही है। और हमें वायर दिख रहा हे।